यहाँ पर आप देख रहे हैं की कुछ खेती किया गया है। जो केलवा फुल का पेड़ है और जहाँ पर धान की भी खेती की गई है ये खेत है। जहाँ पर तरह-तरह के पेड़-पोधे हैं। और यहाँ पर लोग --